जो की एक प्रशासनिक कक्ष की है यहां पर आर_ए_एस आई_ए_एस अधिकारी बैठते --

उस फोटो में श्री ब्यूटी पार्लर दिखाया गया है यह पार्लर बीकानेर के अंबेडकर सर्किल के उधर स्थित है।

मैम अपने स्कूल के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का पाठ पढ़ा रही है।

टाइल्स बौन की दिखाई गई है।

जहां पर बहोत हि अच्छी डेकोरेशन कियी गई हैं और यहाँ महादेव मंदिर --

साफ सुथरा है और इस प्लेटफॉम में बहोत ही तरीके के इक्विपमेट्स भी लगे हैं।

इस बैंक से ट्रांजेक्शन बहोत इजीली कर सकते हैं और बैंक में सेविंग और --

इस पहाड़ के नीचे खाई है जिसमें बहोत सारी चट्टाने है।

एक सुनसान एरिया में बहोत ही अच्छी कॉलोनी में है।

बहोत सारे जैकेट वगैरा बनती है लेदर की रैकजिन की।